और पार्किंग के बाहर बहुत सारी बाइक साइकल्स और बोर्ड लगे हुए हैं और काफी कचरा भी फैला हुआ है।

इस तस्वीर में एक म मंडप सजा हुआ दिखाई दे रहा है काफी झूमर और लाइट के साथ--

नीचे फर्श पे भी काफी छोटे छोटे लाइट्स के बल्ब जगमग कर रहे हैं।

और कुछ उस बिल्डिंग के पोस्टर पे कुछ लिखा है और साइड पे किनारो पे--

के शोशे से हम देख सकते हैं दुकान बहोत अच्छी और शानदार लग रही है दुकान के बाहर दो स्कूटी और एक बुलेट लगा हुआ हैं।

ये तस्वीर कुछ श सर्विस शॉप्स की हैं।

दो ट्रक के बाहर एक लाल रंग की स्कूटी और एक मोटरसाइकिल खड़ा है।

इस तस्वीर में काफी ग्लूकोनडी की बॉटल्स हैं एंड --

जो रेड कलर के हैं एक टेबल पर पड़े हुए पास में दो चेयर --

माताएं की अह ड्राइंग की गई हैं और आस पास काफी ले--

ये तस्वीर किसी एक गली महौल्ले की है जिसमें कुछ बड़ा सा लेकर--

चमकीली वाली लड़ियां भी लगी हुई है पास में एक शॉप भी है दुकान है।